इस तस्वीर में दो मंजिल बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है इसमें कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे है जो नीचे चटाइयों पर बेठे हुए हैं।

इस तस्वीर में पानी दिख रहा है और बहुत सारी नाँव भी दिख रही है जो किनारे पर आ रखी हुई है नाव में कुछ आदमी बैठे हुए भी दिखाई दे रहे है।

कपड़ा गले में बांधे हुए है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ जिस मे स्टेट बेंक एटीएम लिखा हुआ है।

पंखे भी लगे हुए है एक माइक भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है नीचे ग्रीन कलर का कॉरपेट बिछा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में बसें दिखाई दे रही है। एक बस में उतर प्रदेश परिवाहन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आदमी भी दिख रहे है। --